छत में लाइट भी रखी लगी हुई है।

छत का कलर भूरे रंग का है।

इस झींगे मच्छी में रोशनी चमक रही है।

यहां कई सारे दुकान है दुकान के आगे एक लड़का खड़ा है और उसके ही बगल में एक साइकिल खड़ी है।

छोटा सा दुकान है जिसके आगे दो बंदे खड़े हैं एक बंदे ने लाल कलर की शर्ट और ब्लू कलर की जींस पहनी हुई है जिसके साथ सफेद जूते पहने हुए हैं।

और उस टी शर्ट में एक अनानी एक्सचेंज लिखा हुआ है।

सूरज की रोशनी पेड़ों में गायों के ऊपर आ रहे हैं एक कच्ची सड़क भी जा रही है जिसमें दो गाय चल रहे हैं।

पीछे एक स्क्रीन है और साइड में रंग बिरंगे कपड़े टंगे हुए हैं।

दुकान में चांदी रंग की बहुत सारे मूर्तियां रखे हुए हैं।

हर जगह हरी भरी घास दिखाई दे रही है बहोत सारे फूल पेड़ पौधे दिख रहे हैं बिजली के खंभे भी हर जगह लगे हुए हैं।

कूटी के किनारे बहोत सारे पेड़ है और पेड़ों के पत्ते कुछ लाल कुछ हरे हैं।

जिसमें स्टेज में कई सारे बच्चे हैं एक के ऊपर एक खड़ा है और एक लड़की ने झंडा पकड़ा हुआ है।

ऊपर में बड़े बड़े शब्द से एम और पी लिखा हुआ है पीछे पूरा नीला रंग हो चुका है ज्यादातर बच्चों ने हाथ खोले हुए हैं।